बहुत सारी औरतें जिनमे से कुछ सब्जियों काट रही हैं कुछ छील रही हैं और कुछ आटा गूंद रही हैं |

एक बहुत हरियाली सा एक बगीचा है जिसमें बहुत हरी-हरी घास है।

हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर बुक के अंदर अ स्टोर के अंदर एक लड़की दिख रही है।

रेड और ऑरेंज कलर का पर्दा यूज किया गया है उस पे एक नीले कलर की बॉर्डर की पट्टी भी दिखाई दे रही है।

एक दुकानदार दिखाई दे रहा है जो ये सब बेच रहा है साइड में एक पानी की बाल्टी भी रखी हुई है आगे --

लोग दिखाई दे रहे हैं काम करने वाले जिन्होंने सफ़ेद टोपी पेहेन रखी हैं कुछ लोगों ने यहाँ पर --

नीली जींस पहने एक आदमी भी खड़ा दिखाई दे रहा है जिसके पास में एक दुकान है उसका शटर बंद दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे ट्रॉफी रखी हुई है जिसके पीछे एक बैनर लगा है ए.के. फिटनेस जिम सेलिब्रेशन ।

और दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनसे थोड़ी दूरी पर एक बाइक भी दिखाई दे रही है और दूर-दूर तक पूरी सड़क खाली नजर आ रही है।

सुंदर फूलों का प्रयोग करके स्टेज दिख रहा है जिनके पीछे बड़ी सी --

एक हरे कलर की ट्रैन आती दिखाई दे रही है | दो पटरियां बिलकुल खाली नजर आ रही है |

एक बड़े से कमरे में चार लड़कियाँ डांस करते नजर आ रहे हैं जिसमें से तीन ने जींस पहने हुए हैं और एक ने --

जिसमें चाय अथवा कॉफी हो सकती है।